कुछ पटाखे जलाए गए हैं जिसकी लाइट दिख रही है बैकग्राउंड --

होटल के सामने काफी ज्यादा सामान है.

जो काफी ज्यादा बड़ा है काफी साफ सुथरा है.

जहां काफी ज्यादा पैड लगे हैं सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिसमें आई लव चायल लिखा हुआ है काफी सुंदर व्यू है।

यहां पर मुझे एक बड़ी सी--